ऑक्सफोर्ड की मोटी सी किताब है और बहुत सारा डिक्शनरी भी है मोटा- मोटा।

बहुत सारा हाथ है उसका बनाया हुआ जिसमें और बहुत कुछ पकड़ा हुआ है एक हाथ में तीर धनुष पकड़ा हुआ है और उधर महादेव भी --

और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है उधर|